यह एक सोफा का फ़ोटो दिखाया गया है यह सोफा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में इस सोफा को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा होगा।

अभी घर बना ही रहे हैं । यह घर आधा बन चूका है और यहाँ पे बहुत सारे लेवर काम कर रहें हैं । घर बनाने में मदद कर रहें हैं और यहाँ पे बहुत सारे आदमी खटते हैं इस घर में ।

यह एक मार्केट का फ़ोटो दिखाया गया है यह मार्केट काफी ज्यादा बड़ा है इस मार्केट में बहुत सारी गाड़ी चलते रहते हैं हर वक़्त यह मार्केट --

यह एक सब्जी मंडी है यहाँ पे बहुत सारे लोग सब्जी खरीदनें के लिये जाते हैं यहाँ पे हर प्रकार के भोजन मिलते हैं इसीलिए यहाँ पे बहोत सारे लोग सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं।

यहाँ पे तरह- तरह के सब्जी और फल भी मिलते हैं । यहाँ पे बहुत सारे लोग फल खरीदने के लिए भी जाते हैं ।

यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे एक ही टेबल में एक ही आदमी बैठता है। एक ही विद्यार्थी बैठ--